मग भी है और फूल गांछ फुल गुलदस्ता भी लगा हुआ है एक टेबुल में तो दो--

हाथ धोने का भी सिस्टम लगा हुआ है और ये अच्छे नजर आ रहे हैं।

सुविधा भी है और इसमें आदमी भी खड़े हैं और मिक्सी --

ये अच्छे तरह से कुछ उर्दू टाइप का या संस्कित --

इसमें आदमी लोग को लेटा कर उसका एक्सरे किया जाता--